एक दुकान दिखाई दे रही हैं दुकान के बाहर हमे व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है व्यक्ति के पास एक बाईक खड़ी हुई है।

यहाँ बहोत सारे कप दिखाई दे रहे है जो वो काफी सुंदर दिखाई दे रहे है और अच्छे लग रहे है उम्म यहाँ पर रंग-बिरंगे पुते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर नीचे छोटे कप भी रखे है जो बहोत खूबसूरत लग रहे है।

बकरिया भी दिखाई दे रही है जो बहोत खूबसूरत भी लग रही है और यहाँ पर हमे पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो बहोत खूबसूरत लग रहे है पर कुछ बकरिया --

एक दीवाल दिखाई दे रही है फ्रंट पर बोहोत सारे फोठुन फोटो लगेन दिखाई दे रही हैं।

कूड़ा कचरा भी दिख डला दिखाई रहा है जो बहोत खराब लग रहा है झील का पानी भी बहोत खराब लग रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है और सामने नीले-नीले आसमान भी दिखाई दे रहा है जो बहोत सुंदर लग रहा है यहाँ पर पुलिन बना हुआ है जो बहोत खराब लग रहा है।

यहाँ पे एक बाल्टी नीले कलर की दिखाई दे रही है जो बहुत ख़राब लग रही है वहाँ पर कुछ काला काला भी है जो बोहत खराब लग रही है सामने दुकान भी दिखाई दे रही है बोहत खूबसूरत लग रही है दूकान के ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है जो अच्छा लग रहा है।

दिखाई दे रही है जो गोभी के फूल कि सब्जी दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छी लग रही है ये वहाँ पर बहोत सारी घास फूँस भी लगी है जो बहोत खराब लग रही है और यहाँ पर सब्जी भी लगी हुई है जो बहोत अच्छी लग रही है यहाँ पर--